बहोत जख्म का घास दिख रहा है दूर-दूर में --

यहाँ पर एक ठो रोड दिखाई दे रहा है। एक ठो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। दो ठो पोस्टर दिखाई दे रहा है। एक ठो लैम्पोस्ट दिखाई दे रहा है। बहोत सी आदमी दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है। कैमरा दिखाई दे रहा है।